च काला कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहन कर खड़ा हुआ है।

यहाँ सड़क है सड़क पर कुछ गाड़ियां चल रही है और रिक्शे रिक्शा चल रहा है।

खिड़किया लगी हुई है रे खंभा लगा हुआ है जिस पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है।

दो मंजिला तीन मंजिला कुछ इमारते है यहाँ पर बोर्ड लगे हुए है बैनर लगे हुए है और उनमे दरवाजे लगे है खिड़कियाँ लगी हुई हैं ।

कुछ इमारतें दिख रही है उनमें दरवाजे खिड़कियाँ लगी हुई है।